एक गेट है लोहा का उधर एक आदमी है जो की खड़ा है ब्लॉरो है घर है पेड़ है।

जहाँ पे बहुत अ-स्कूटी का अ-स्कूटी लगा हुआ है और उसपे सजावट किया गया है बैलून से और स्कूटी का जो कलर है जो कि ब्लैक कलर का है।

रखा गया है और ये इसका जो कलर है जो की कत्था कलर का है मैरून में है।